यह कोई पुराना भवन दिख रहा है जो बोहोत ही आधुनिक तरीके से बनाया गया है।

भवन के ऊपर बड़े-बड़े बिजली के तार लगे हुए हैं| भवन का द्वार बड़ा अच्छा लग रहा है जिसका एक बड़ा ही गेट सुंदर लग रहा है।

सामने एक बड़ा सुंदर सा गार्डन सा दिखाई दे रहा हैं जो चारो तरफ हरयाली घास से अच्छा ऊपर बादल दिखाई दे रहे हैं बादले बहोत सुंदर लग रहे हैं।

यह सामने कोई गार्डन दिख रहा हैं गार्डन के आजु-बाजु बहोत सुन्दर घर दिख रहे हैं गार्डन बहोत सुन्दर लग रहा हैं गार्डन का गेट भी बहोत बड़ा हैं और गार्डन के नीचे बहोत सारी हरयाली हैं।

रास्ते में चारो तरफ पेड़-पौधे दिख रहे है बिल्डिंग के ऊपर से काले-काले बादल दिखाई दे रहे है।

सामने एक बड़ी होटल दिखाई दी रही हैं होटल बहोत बड़ी दिख रही हैं और बहोत आधुनिक तरी-तरीके से बनाई गई हैं होटल के बाहर जो गार्डन हैं वो भी बहोत अच्छा लग रहा हैं। होटल बड़ी सुन्दर लग रही है।

ड्राय क्लीन की दुकान बड़ी ही नजर आ रही है और अच्छी लग रही है| ड्राय क्लीन के बाहर हरी जगह दिखाई दे रही है।

येहे कोई बड़ी जिम दिखाई दे रही है। जिम में बड़ी-बड़ी कही प्रकार की मशीने रखी हुई हैं।